इस इंसान ने सफेद रंग की शर्ट पहनी है।

व्यायाम के लिए बहोत सारी मशीन्स रखी है।

कुछ सब्जियों है काफी है लेस कुरकुरे चिप्स सब --

यहां एक टेबल और कुछ कुर्सियां र--

गोल्ड सिल्वर डायमंड और प्लैटिनम यहां सभी प्रकार के--

उनमें से दो काली और दो सफेद है। यह सड़क किनारे--

और इसपे जो नेक्स करके एक ब्रांड है।